भीड़ में हम देख सकते है यहाँ पर हमें बहोत सारे बच्चे एक सर्कल बनाते योगा करते दिखाई दे रहे है यहाँ पर बच्चे अपने हाथ से अपने पाँव छूते दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें लड़कियाँ और लड़के भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें कुछ मेट दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे कुछ घासें दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें बस जूते दिखाई दे रहे है आस - पास हमें एक जाली दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रही है झाड़ पौधे दिखाई दे रहे है खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं।

तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें स्कूटी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पर हम एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कुछ लोगों के पाँव दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें --

यहाँ हम देख सकते है यहाँ पर हमे दो बाइक दिखाई दे रही है एक बाइक हमे नीले और सफेद कलर की दिखाई दे रही है काले कलर और की दिखाई दे रही है।

बहुत सारे हार फूल दिखाई दे रहे हार हमें कुछ पीले रंग के दिखाई दे रहे कुछ गेंदे के दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज रंग के--